और दुकान का आगे में बहुत सारा इंसान है।

और एक लम्बा टेबल भी है।

तीन फैन भी दिखाई दे रहा है।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

और बहुत सारा बलूंस है।

और बहुत सारा रस्सी भी है।